एंड जो दीवार का कल--

यह ऐटीएम् है। यहाँ पे अ आ लाइन लगी हुई हैऐटीएम् मशीन के पास।

एंड ये मजदूर लोग उसको घोल बना के उसको मिक्स कर रहे हैं यहाँ तगाड़ी पड़ी हुई है उधर बाल्टी है।

एंड यहां पे बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई है और रोड के उस साइड पेड़ भी लगे हुए है।

सर्किल में सीमेंटेड चबूतरा है एंड ऊपर जो है--

यह एक क्राफ्ट चल रहा है। बच्चे यहाँ पे बैठे हुए क्राफ्ट का --

रेड एंड पिंक कलर का पर्दा डला हुआ है। फ्लोर पूरा सीमेंटेड कल --

घांस रखी हुई है और एक पौधा लगा हुआ है।

और यहाँ पे भी एक शॉप है। जो--

काफी सारे बच्चे खेल रहे है यहाँ पे तो मंडप के --

आसमान का भी कलर पूरा व्हाइट नज़र आ रहा है।

ये एक गार्डन है जहाँ पे म्म --

पुरे वुडेन से बने हुए है कहीं और कहीं पे फ्लोर पे ब्लैक नज़र आ रहा हैं।